दो आलू रखे दिखाय दे रहे है तथा इसके बगल में हलकी घास दिखाय दे रही है. तथा पेड़ दिखाय दे रहा--

यहाँ एक दरबाजा दिखाई दे रहा है तथा इसके बाहर एक दीवार पर लिखा दिखाई दे रहा है।

दिखाई दे रही है एक टेबल के ऊपर एक तोल काटा दिखाई दे रहा है।

तथा दीवार पर टंगे कुछ यहाँ पे पॉलीथिन दिखाई दे रहे हैं।

यह एक बैट की शॉप दिखाई दे रही है तथा यहां बहुत सारे ट्रॉफी रखी दिखाई दे रही है जो कि बड़ी-छोटी है तथा बहुत सारे बैट रखे दिखाई दे रहे।

यह एक गार्डन दिखाई दे रहा है। इसमें बोहोत बहु सारे गमले रखे हुए हैं।

यह एक दरवाजा दिखाई दे रहा है जिसमें और ईसाइयों का सिंबल बना हुआ है।

तथा एक मैन गेट दिखाई दे रहा है जिस जो कि ग्रीन कलर का है तथा दो आदमी बाहर दिखाई दे रहे हैं जिनके सिर दिख रहे हैं।

यहां कुछ वर्कर घर बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं यहां सेटिंग लगी हुई है।

तथा दो घर दिखाई दे रहे हैं एक रेड कलर का टब खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पानी भरा हुआ है तथा मिट्टी भी दिखाई दे रही है।

ये एक नदी के किनारे एक खाली जगह दिखाई दे रही है जिसमे आ कुछ झंडे लगे हुए दिखाई दे रहे है एक खंभा लगा है जिसपे दो लाइट दिखाई दे रही है ।

तथा एक आदमी चेयर पे बैठा दिखाई दे रहा है। एक आदमी खड़ा है एक लेडी दिखाई दे रही है। इसके बहार खाली जगह दिखाई दे रही है। इसके बगल में एक दरवाजा दिखाई दे रहा है।